यह एक झरना है।

और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

यह देखिए की यह एक बधह है इसमे पानी --

यहाँ कुछ आदमी जा रहे है और कुछ लाइट भी जल रही हैं और कुछ बिजली के खम्भे भी दिख रहे है। कुछ पेर भी दिख रही हैं।